कुछ आकर्षित बलून्स है और यहा पे बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है साथ मे कुछ गमले पे फ्लावर्स रखे हुए है।

यह एक ख्रिष्चन लोगोका मंदिर है ये पाहाडों के बिच में है पाहाडों पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है और मंदिर के सामने गाडीया खडी है।

यह एक महाविध्यालय का गेट है। यह एक वैधन्यान महाविद्यालय है।

य ह गेट के बाहर से तस्वीर ली गई है और गेट के अंदर एक बहुत बड़ी ईमारत है जो की महाविद्यालय--

एक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते है और सामने शिहन का बड़ा सा स्टैच्यू है और कुछ लोग है।